जे दरिया दिखाई दे रहा है जिसके साइड में पूल नजर आ रहा है जहाँ से लोग जा रहे हैं और इसके पीछे कुछ घर भी दिखाई दे रहे है।

एक खूबसूरत रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे मुझे पाँच बन्दे दिखाई दे रहे है और तीन बन्दे टेबुल पर बैठे हुए है।